और कुछ लोग खड़े हुए है और कुछ ऑटो टेम्पो वग़ैरा भी खड़े हुए है। वहां पर मैदान में--

--और बिल्डिंग है अ छ सात फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है और रोड पर एक ऑटो चल रहा है रोड की साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है रेलवे स्टेशन बना हुआ है और यहां पर आ रेलवे स्टेशन के सामने से टू वे रोड गया है।

और इसके रा-राइट साइड में एक टेम्पो खड़ा हुआ है रोड के बीच में एक डौगी बैठा हुआ है एक अंकल खड़े हुए है और रेलवे स्टेशन मैं कुछ लोग है और रात का टा --

यहाँ पर एक नदी हैं नदी के के किनारे बहोत सारे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए दोनों साइड किनारो पर पेड़ लगे हुए है छोटे बड़े बड़ सभी प्रकार के पेड़ लगे हुए है।

पहाड़ी एरिया हैं पहाड़ी और कुछ तालाब के किनारे छोटे छोटे पहाड़ बने हुए जिनके ऊपर पेड़ लगे हुए है और नाव रखी है नांव में कुछ लोग बैठे है तीन नांव हैं सिप हैं।

अ यहाँ पर एक कैफ़े है और जो की बोहत नाईट के टाइम मे उसपर लाइटिंग हो रखी है और जो की उसका बैनर लगा है वो लाइटिंग से कवर किया गया है।

टेंट बने हुए है टे जिससे कि छोटे-छोटे तम्बू टाइप के बना के टेंट बना की रखे हुए है और लाइट जल रही हैं चार-पांच टेंट है जिन की साइड में एक एक लाइट जल रही हैं बड़ी-बड़ी--

--उसको कैफ़े या रेस्टोरेंट कह सकते हैं उसमे अभी अ- एक बोर्ड लगा हुआ है बहार की तरफ़ गाउंट पड़ा हुआ है कुछ गोल्डन लाइट्स लग री है और डोर लगे हुए हैं।